और में अनेक बिल्डिंग बनी हुई हैं।

यह दृश्य एक कैफै के बाहर का है।

यहा पर दो लड़किया सेल्फ़ी लेते हुए नजर आ रही हैं और कैफै का नाम है द सिटी कैफै ।

यूपी में मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है और कार्यालय के बाहर --

यह दृश्य एक कंस्ट्रक्शन साइड का है जहा पर --

यहा पर एक बड़ा सा शिवलिंग --

चीटिंग एरिया है और वहाँ पर कुछ व्यक्ति महिला महिलाये बच्चे बेठे हुए नजर आ रहे हैं।

लाइब्रेरी मे जाने के लिये एक सीढ़ियों का रास्ता भी है और लाइब्रेरी का नाम है चाणक्य लाइब्रेरी ।

ली हुई है और यह डेरी का नाम है अजंता डेरी ।

मूर्ति रखी गई है और उस मूर्ति के सामने एक --